और इस रास्ता का साइड में सोलर ये सब लगा के रखा हुआ है।

यहां एक बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहे है इस बिल्डिंग को बाहर में गेट और फिनिशिंग बना के रखा हुआ है।

दो गैलन भी सामने में रखा हुआ है।

यहां घर का अंदर एक टेबल दिखाई दे रहे हैं।

और इस बिल्डिंग के ऊपर में फ्लावर पॉट यह सब ऊपर में रखा हुआ है।

यह एक ग्राउंड बहुत सारा आदमी लोग बॉल खेल के दिखाई दे रहे हैं।

यह एक दुकान का अंदर एक आदमी दिखाई दे रहे हैं।

यहां घर का अंदर एक टेबल दिखाई दे रहा है और सामने में चेयर रखा हुआ है।

और वहां पे फ्लोर में कुछ बैग ये सब भी रखा हुआ है।

और अंदर में एक बड़ा वाला बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं।

यह होटल का अंदर बहोत सारा चेयर और टेबल रखा हुआ है।

और अंदर में बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

और बगल वाला में बहुत सारा फूल ये सब बेच के रखा हुआ है।

माला में फूल ये सब पहेना के रखा हुआ हैं।

और सामने में एक ड्रम भी दिखाई दे रहे है।

और बहुत सारा वॉल में प्लास्टिक में बांध के सामान रखा हुआ है।

यह एक बड़ा वाला बैंक दिखा दे रहे हैं इस बैंक बाहर में बहुत सारा आदमी लोग दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक बजार दिखा दे रहे है इस बाजार का अंदर बहुत सारा आदमी लोग सब्जी ये सब बेंच के बैठा हुआ है।

इस ट्रक का बाहर में एक आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

और साइड साइड में बहुत सारा पत्थर ये सब भी दिखाई दे रहे है।

यहां एक जगह में आदमी लोग आग जला के बैठा हुआ है।

में लाइट जल के दिखाई दे रहे हैं।

और साइड में चेयर टेबल ये सब दिखाई दे रहे हैं।

और बिल्डिंग का ऊपर एंटीना लगा के रखा हुआ है और आगे में गाड़ी ये सब भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां घर का अंदर एक आदमी दिखाई दे रहे हैं और साइड में चेयर यह सब रखा हुआ है।

और साथ में बहुत सारा बॉटल ये सब में साइड में रखा हुआ है।

और एक कैलेंडर भी रखा हुआ है।